और नेट जैसा डिज़ाइन दिया गया है और ऊपर देखिये बहुत सारे अ लकड़ी लगे गए है बिच में गेप दिया गया है।

आगे देखिये टॉवर हैं और यहाँ पर देखिये एक पिले रंग की प्लास्टिक है जो की बिछी हुई है उसमें छोटे - छोटे गमले है।

यहाँ पर नदी है और ये जो नदी का पानी रंग है वो हरा है और अगल-बगल बहोत सारी फुलवारी लगी हुई है और जो की पेड़ भी यहाँ पे छोटे-छोटे--

निकाली गई है| और दस सी कैमरा लगा गया है| उधर देखिये काले रंग की तार नई ऊपर से आई है।

यहाँ पे कुछ लड़के है जो ग्रुप में बैठे हुये है और उनके हाथ में पत्ती बनी हुई ली हुई है और ऊपर से दे की दी ऊपर की हुई है और यहाँ पे कुछ --

बैठे और एक कीपिंग कर रही कर रही है और फील्डिंग कर रही है और यहाँ पर देखिये उन्होनो सर पे हेलमेट पेहेन हुआ है।

अपने मुँह पे मुखौटा लगा हुआ है।

पिले रंग का टी शर्ट पहने हुए हैं और नीचे लुंगी पहने हुये है और उधर एक सामने एक और आदमी है उसके आगे जिसने सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी हुई --

और यहाँ की जो दीवारे है वो सफेद है और इसपे जो बीच - बीच पे हरे रंग की रंग की गयी --

सामने दिखये एक घर है जिसके ऊपर प्लस का सीमिबोल और यहाँ पर दिखये इसमे लकड़ी के जैसे बीच मे बीच डेसिंगे बानी गयी है और यहाँ पर देखिये जो खम्बा है वो भी--

लाइट है जो हैड लाइट के ऊपर जल रही है और जो जहाँ का आसमान है जो काला है और बैंगनी हैं।

हुआ है और ऊपर दिखये स्टील की रैली हुई है और यहाँ पर बहोत सारी दुकाने है ऊपर भी शटर बंद है और नीच भी दो शटर बंद है जिसमे की बस दो ही दुकान खुली हुई है।